ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

बाहर की तरफ एक बड़ा सा खजूर का पेड़ लगा है।

सामने एक बैठक बनी है।

बच्चे अपना अपना क्राफ्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें ला सामने की तरफ बेंच और कुर्सियां लगी है।

ये एक मूवी थियेटर हैं।

ये एक मैदान है जिसमें बोहोत सारी हरी-हरी घासें उगी हुई --

आस पास बहुत सारे गमले रखे दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर कि तरफ बैनर लगा है।

ये एक डेकोरेशन हुई है।

सामने बड़ा सा फाउंटेन लगा है।

मस्जिद में तीन मीनारें बनी हैं और तीन गुंबच बने दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी कूड़सीयां भी रखी दिख रही हैं।

तो कुछ लोग टहलते भी दिखाई दे रहे हैं।

मैक्डोनस के तीन बोर्ड लगे हैं।

जिसमें बहोत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक मेट्रो स्टेशन है।

उसके बगल में पार्किंग एरिया है। जिसके अंदर कार बस गाड़ियां खड़ी दिख रही है।

सैलून में दोनों तरफ आईने लगे हैं।

जिसके आस पास बहोत सारे पेड़ उगे हुए हैं।

कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो की लाइन से बैठे हैं।

और एक साइड में लोहे की छत बनी है छाते की तरह।

कुछ लोग पूल देख भी रहे हैं खेलते हुए। ऊपर की तरफ लाइट लगी है।